यहां पर महिला भी बैठी हुई है और कुछ लोग सो रहे हैं यहां पर बाइक स्कूटी खड़ी हुई है।

और घर के पास में एक और बिल्डिंग है वो भी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक मेला लगा हुआ है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगन --

लोग अपने यहां पर प्रमाण पत्र वगैरा बनाने के लिए आते है और सामने एक पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है व्हाइट कलर --

और यहां पर बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है तो सोफे लगे हुए आरामदायक हैं यहां पर टेबल चेयर्स बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

और पास में एक पेड़ भी दिखाई दे रहे कारीगर मकान बना रहा है।

यह स्टेडियम बहुत बड़ा है यहां लोग खेलने के लिए आते है स्पोर्ट्स के बच्चे यहां पर खेलते हैं।

सभी भगत सिंह महात्मा गांधी और सभी नेताओं की यहां पर तस्वीरें लगीं हुईं है।

और ये गेट बंद है बाहर बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।